ये एक मस्जिद हैं मस्जिद के ग्रीन कलर का बड़ा-सा गुम्मद हैं और अगल-बगल पि मीनार भी हैं।

और ये अँधेरा रात के वक़्त इसमें लाइटिंग जो जल रहे है बहुत ही खूबसूरत है।

इस के अंदर बिछा हुआ हैं कारपेट बिछा हुआ हैं और तीन आदमी वाइट कलर का कुर्ता पेजमा पहन कर बैठ कर इबादत कर रहे इस के ऊपर बहोत बड़ा-सा झूमर लगा हुआ हैं।

ये एक शादी हॉल के बहार का तस्वीर है जो अंदर में जा रहे है दो आदमी एक मेहरून और ब्लैक कलर के ड्रेस पहने हुए हैं।

ये किसी घर के बाहर का डेकोरेशन किया हुआ है शादी हॉल की तरह और इसमें बहुत सारी ट्यूनइंग लाइट हैं।

ये एक म्यूजिकल क्लास है जहाँ ड्रम गिटार और पियानो और बहुत सारे म्यूजिक स्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

ये एक बहुत खूबसूरत सिनेरियो है ये एक ब्रिज का तस्वीर है ब्रिज के निचे झील है और झील के बगल में हरे-हरे बहुत सारे दरखत है।